इस पर भी बहौत सारे तेल के ऑयल के डब्‍बे रखे हुए हैं और कुछ और सामान है।

बोहोत ही अच्छा होटल है इस होटल की लाइटिंग भी अच्छी है और इसके सामने --

नया-नया जिम खुला है इसमें ऊपर छत पर काफी सारे बलूनस लगे हुए और यहां पर बहुत सारी मशीनस है एक्‍सरसाइज --

ये पीकोक काफी बड़िया लग रहा है और इस पीकॉक के पीछे एक फ़ाउंटेन भी है ।

बाज़ू मे एक आदमी बाइक पे बैठा हुआ है और सानने से ऑटो आ रहा है और ये --

चेयर्स काफी बढ़िया लगी रही हैं ऊपर लाइटिंग भी काफी --

पौधे और फुल है और इस नर्सरी में काफ़ी ज्यादा जो कि हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी है और --

और काफी अच्‍छा हॉल है और आस-पास ग्रीनरी है और ऊपर जाने के लिए सीढि़यां है सीढि़यां --

और प्लेइंग एरिया के पास यहाँ पे कॉफी की शॉप भी है जिसकी काफी अच्छी कॉफी मिलती है ।

सेमे बाल वृक्ष का वॉल है जिस पर समेत रही है और आस पास कभी सारे फुल को --

प्राजों पहना हुआ है और एक का लाल बच्चा है जो के राइनो के कान खी --

लोग काम करना चाहते है ये हमारी सिटी का टॉप ऑफिस है और इसके अंदर सैलरी भी आपको अच्‍छी मिल जाती है ।

इमेज एक फिश मार्केट की है जिसमे काफ़ी सारे लोग फ़िश बेच रहे है और लगता है इसकी --

फिश काफी बढि़या है तभी तो इनपे इतना रस है और इनमें काफी सारी बढि़या-बढि़या लंबी-लंबी फिश है और ये आदि --

साफ-सुथरा माहौल हैं अदर मार्किट मे बहुत गन्दा मौहोल हैं।

मैं काफी जादा ग्रीनरी है और यहां पर टू पाथवे है ।